यह एक बड़े से कछुए का दृश्य है।

सामने में एक फ्रिज रखा हुआ नजर आ रहा है जिसपे काफी सारे आइसक्रीम के पोस्टर लगाए गए हैं।

सीढ़ियों पे रेलिंग लगाया गया है।

शीशे के दरवाजे लगाए गए हैं।

यह एक रिम्स फॉल का दृश्य है जिसमें काफी सारे पत्थर नजर आ रहे है।

एक कॉफी की मशीन नजर आ रही है और उसके ऊपर एक पानी का टैंक रखा गया है।

और एक छत पर काफी सारे चोंगे बांधे गए हैं।

अंदर में ब्लू कलर की टाइल्स लगाई गई है।

यह एक मस्जिद के अंदर का दृश्य है।

और पिलर्स के डिजाइन भी अच्छी लग रही है।

बगल में एक सीढ़ी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है।

यह एक होटल गेटवे कर्नाटक के बाहर का दृश्य है।

काफी सारे मशीन के पार्ट्स गिरे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक रोड जाती हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की जमीन पे काफी सारे प्लाई के टुकड़े गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ नजर आ रहा है जिसने झोला रखा है झोले व्हाइट कलर के हैं।

नव का कलर काफी सारा नजर आ रहा है।

यह एक हेल्थ प्वाइंट हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य है।